यहां हमें नजर आ रहा है कि यह कितना सुंदर और छोटा सा--

सुंदर खेत खलिहान गांवों का है जहां--

इस हॉस्पिटल के इस रूम में हमें--

इस नजारे में--

यहां हमें नजर आ ड़हा है कि यह बहोत ही बड़ा सा कोई ग्राउंड है इस ग्राउंड के अंदर--

इस शॉप में हमें यहां पर बहोत सारे बेसिंस और टॉयलेट सीट्स नजर आ रहे हैं।